एक चेयर्स पडे है।

दिखाइ दे रहे हैं।

इसमें काफी गोल टेबल --

लगे हुए हैं। इसमें काफी लोग भी--

ये थिएटर की तस्वीर है।

साइड मे टू टेबल्स भी --

कर्टन्स लगे हुए हैं।

के बड़े बड़े बॉक्सेस पड़े हैं।

ये कांटेक्ट नंबर बार बार--

फ्लार लड़ियों से ऊपर डेकोरेशन --

ये तीन टीचर्स साड़ी पहन कर--